मैं यहां देख पा रही हूं एक बड़ा सा हॉल है यहां पे कुछ स्कूल वाला आयोजन किया गया है यहां पे बहुत सारे--

मैं यहां देख पा रही हूं एक बड़ा सा मैरिज हॉल है यहां पे--

मैं यहां देख पा रही हूं एक बहोत ही बड़ा आर्यर--

साड़ी पहने हुए कुछ महिलाएं नजर आ रही है मास्क भी लगायी है और कुछ पुरुषे भी सफेद कलर के पैन्ट कुर्ते पहने हैं।

और नेटवर्क टावर भी नजर आ रहा है खुला असमान है जिसके वजह से बादल नजर आ रहा है।